यहाँ पर एक काले रंग की खाने की प्लेट है। प्लेट में चावल निम्बू खीरा प्याज --

यह एक कमरा है जहां पर कागजों से कुछ जानवर और पक्षी बनाए गए है जिनमें से कुछ हिरण है बतख है।

कपड़े का रंग पीले और हरे रंग का है। गदा लिए हुए हैं। गदे का रंग चमकीले रंग का है। सुन्दर सी दीवारें हैं। दीवारों का रंग लाल और सफ़ेद रंग का है।

यह एक आपूर्ति विभाग दफ्तर है। जहां पर दरवाजा बंद है। दरवाजे का रंग सफ़ेद रंग का है। ताला लगा हुआ है।